उपर सफेद आसमान भी है एक वेद भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक शख्स दिखाई दे रहा है।

पोस्टर भी लगाया हुआ है ऊपर बहुत सारा बल्ब्स हैं।

टेबल के ऊपर पानी भी रखी हुई है।

और उसके साथ जूस भी है और बहुत सारे कार्टूंस भी है।

मुझे इस तस्वीर में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

रेस्टोरेंट के बाहर स्कूटी रखे हुए हैं।

स्टोर के अंदर कई सारे कुर्सियां और टेबल्स रखें हुए हैं।

लोगों के चेहरे पर ब्लर किया हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारी शॉप दिखाई दे रही है।

बड़ा सा अंब्रेला भी है।

जिसपे कई सारी गाड़ियां भी है।

ये सारे बोर्ड्स भी लगाए हुए है।

ढेर सारे जत्ती भी लगाए हुए है।

उसके सामने एक छोटा सा बेसिन भी है और उसके ऊपर आ आईना भी है।

मिरर के साथ एक स्विच बॉक्स भी हैं।

दीवार में एक पेंटिंग बनाई हुई है।

शेल्फ्स में बहुत सारे कप्स रखे हुए है।

बहुत सारे ट्यूबलाइट्स भी रखे हुए हैं।

कांचे तिरा से बनाया हुआ है।

पीछे बहुत सारे घास है।

मुझे इस तस्वीर में एक पुलिस स्टेशन दिखाई दे रहा है।

ढेर सारे झंडे भी लगाए हुए हैं।

एक इलेक्ट्रिक पोल भी दिखाई दे रहा है।

इस छोर भी कई सारे लोग बैठे हुए हैं।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

मुझे इस तस्वीर में एक ब्रिज दिखाई दे रहा है।

घोड़ा का भी रखा हुआ है।

ऊपर का छत सफेद रंग से रंगा हुआ है।

पीछे का जमीन सीमेंट से बनाया हुआ है।

क्यूं_आर कोड भी है कई सारे कुर्सियां भी है पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही हैं दरवाजा भ--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

छे बिखरे सारे पत्थर भी है। दरवाजा भी है। छोटा सा ब्रिज भी बनाया हुआ है।

नदी के ऊपर एक नाव भी है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे पेड़ पौधे और पहाड़ भी है।

इसके ऊपर गोल गोल खिलौने हैं।

और वे लोग एक बाइक को चेक कर रहे हैं।

के बाहर बहुत सारी हरि भरी घास है।

नीचे का जमीन भी है।